यह एक इमेज दिखाई दे रही |

यहाँ हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है। प्ले प्ले का मैदान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ फंक्शन प्रोग्राम हो रहा है।

प्रतिमा भी बनी हुई है सामने की ओर --

यहाँ पे हमे रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। न्यू न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। उसका इनोगुरेसन हुआ --

यहाँ पर ऑटो खड़े हुए हैं । ऑटो की शॉप है । छोटे-छोटे ऑटो जो होते है बैठने वाले उसकी --

यहाँ पे हमें बहोत ज्यादा पुरानी रेड कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही बिल्डिंग देख के ऐसा लग रहा है कि सरकारी बिल्डिंग है कचहेरी है।

यहाँ पे हमें मार्केट दिखाई दे रहा है वो सब्जी का मार्केट दिख --

बहुत ज्यादा लाइटिंग है । घड़ी बनी हुई है । बहुत अच्छा दिखाई दे --

ये उन पर बोहोत ही ज्यादा अच्छा और बोहोत ज्यादा --